दुल्हन अपने मुह को ओढ़ने मतलब साड़ी से ढकने कि कोसिस कर रही है दुपट्टे से ढकने कि कोसिस कर रही है दुल्हन रेड कलर का साड़ी पहन हुआ है और दूल्हे ने भी बहोत--